इस तस्वीर में मुझे एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

फल पर ड्राइंग और बैनर लगाया हुआ है।

यह तस्वीर किसी कपरे के दुकान की है।

इस तस्वीर में मुझे क्यू_आर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे फोटो भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे थर्मोस और मग भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

आदमी ने ब्लैक कलर का जैकेट भी पहना हुआ है।

आदमी ने शर्ट पेहना हुआ है इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहा है।

चर्च पे कई प्रकार के अल्कोहल भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक झंडा भी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे रस्ता नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे झूला भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे इलेक्ट्रिक के वायर भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर किसी अपार्टमेंट की हो सकती है।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

घर का छत टीना से बना हुआ है।

इस तस्वीर में आदमी ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी भी नजर आ रहा है।

कैफे में पिंक लाइटिंग की गई है।